यहाँ पर मुझे एक फोटो दिखाई पड़ रही है जिस में बोहोत सुन्दर शुन्दर और बोहोत बड़ी बड़ी हरी भरी पहाडे हैं।

यहाँ पर बहौत सारे बॉर्डिंग्स बने हुए हैं यहाँ पर साइकल चलती हुई दिख रही हैं तो कहीं गाड़ी खड़ी हुई दिख रही हैं।

पीला नीला हरा लाल कलर के झंडे लगे हुए हैं और इस बिल्डिंग के सामने बहोत हरियाली है यहाँ पे अलग-अलग प्रकार के गमले भी रखे हुए हैं ।

इस फोटो में एक बड़ा सा घना पेड़ भी लगा हुआ है आ-बिजली के खम्भे भी लगे हुए हैं जिस में लाईट का सिस्टम भी है यहाँ के घर पार से बॉउंड्री करी गई है।